यहाँ सामने में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है बोहोत बड़ा है और यहाँ साइड में कुछ जगह खाली दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे एक पिला कलर के बस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बोहोत सारे --